पीछे हम ये देख सकते हैं कि एक लड़का एक चार पे बैठा है नीचे हमें--

ये कैंटीन है जहां हम देख सकते कि बाहर में बहुत सारे अजीब से कबाड़ देखने मिल रहे हैं छोटे छोटे ग्रासेस देखने मिल रहे हैं।

हमे एक वहां पर डस्टबिन देखने मिल रही है एक स्कूटी देखने मिल रही है।

ये एक गार्डन है जो गार्डन में हमे दो लेजर पट्टी नज़र आ रही है एक ग्रीन कलर की है और एक येलो कलर की--

ग्रीन कलर के निचे बैकग्राउंड में हम देख रहे थे कि पिंक और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन से बनाया हैं।

हा लव बर्ड्स देखने मिल रहे हैं जो लव डिफरेंट डिफरेंट कलर के ऊपर जो स्टिक है ना वहां पर चार लव बर्ड्स बैठे --

ये अंकल बस मे चढ़ रहे है येलो कलर का पहेन के एक अंकल ने अपने को शॉल से लपेटा हुआ है।

एक अंकल पिंक कलर का पहने हैं जिनके हाथ में फोन है और उन्होंने रेड कलर का स्लीपर पहना है।

ये ब्लू कलर के येलो ब्लू कलर के पेंपलेट पे येलो कलर से लिखा गया है बीच में हम दे --

दो पोस्टर बनाए गए जो हम देख सकते हैं एक डॉगी का है और एक कैट का है।

ये हैप्पी बाईट्स फाट्स फूड्स कॉर्नर है जहां पे हमें फाट्स फूड्स मिलते है जो पिंक कलर के लेबर्डस् से बनाया गया है।

जिधर पानी उभरते हैं नीचे हम देखी कि ग्रासिस हो गया ग्राउंड पर छोटे छोटे --

रेड कलर में लिखा है बुक सेंटर व्हाइट कलर में लिखा स्टेशनरी मतलब विगनान बुक --

हम अंदर दुकान के अंदर देखे सकते है की तीन मेल और बैठे हैं हम वहा--

इस के ऊपर रख कर वो अपने हरे समान ऊपर से नीचे से ऊपर लेकर आरा।

हम स्टैंड्स देख सकते हैं जहां पर देख सकते है कि डिफरेंट डिफरेंट साइज के चप्पल्स वगैरह रखे गए।

यहां हम देख सकते हैं ये ग्रासेज है जहां पर हमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स नजर आ रहे एक झाड़ पे --

एक अंकल हेलमेट पहन के चेक्स वाला टी शर्ट पहन के आ रहे हैं।

पियर्स की बॉटल हो गई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चॉकलेट्स हो गए।

न्यूट्रेला हो गया हानि हो गया हमें देखने मिल सकता है।

सामने देख सकते हैं की पत्थर गीले हो रखे हैं और पानी का फ्लो थोड़ा।

बहुत सारे लोगों ने रेड कलर का कुर्ता और नीचे पेंट पहना हुआ है और एक लड़के ने रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ है जिसके ऊपर व्हाइट कलर के बने हुए हैं।

राइट साइड में हम देख सकते कि बोट्स के इयरबड्स और ईयर फ्री रखे गए है सामने हम देख--

इवेन जब हम फुटबॉल खेलते हैं जो नेट यूज होती है वो भी नजर आ रही है।

बट एक बिल्डिंग हॉ हॉस्पिटल टाइप का कुछ नजर आ रहा है नाम क्लियर नहीं दिख रहा है एक वाइट कलर में बनी है।

ये बंगलो एरिया का बाहर के साइड है जहां जमीन पे अ छोटे छोटे पत्थर वाला रखा गया है।

इसे पूरा बॉर्डर से बनाया गया है बॉर्डर में हमें ग्रासेस देखने मिल रहे हैं बड़े बड़े झाड़ देखने को मिल रहे हैं।

मेन रास्ता है हम देख रहे थे कि खंभा है जहां पर एलीवेटर लगाया गया है और जहां वायर्स कनेक्टेड है।

सामने जो राइट साइड में है वहां पर फीमेल्स लोग बैठी है में जो लेफ्ट साइड में है वहां पर मेल्स लोग बैठे --

ये बारिश के मौसम का टाइम लग रहा है आजू बाजू के पत्थर जो है वो गीले हो रखे हैं।

हमें दूर दूर तक ग्रास नजर आ रहे हैं झाड़ नजर आ रहे हैं उप्पर भी एक पहाड़ बना हुआ है।

ये एक प्लेस है वी कैन सी इट इज अ चर्च जो चर्च बनाया गया है।

उसके अ बस में हम देखते कि बि_आर जीरो सिक्स पी_एफ टू जीरो सिक्स एट लिखा है।

निचे ब्लैक ओर व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में पुरा वो लेयर बनाया गया है जहां पर लोग खड़े होके वर्क करते है हमें पोस्टर देखने मिल रहा है।

को देखने मिल रहा है जो साइड में एल साइड में पूरा सजाया गया --

ये वलसाड की प्लेस का है जहां पे लिखा गया है जिला आदि जाति सेवा सदन वलसाड--

हमें दूर एक सिग्नल दिख रहा है जिसके ऊपर सारे वगैरह लगे रहते हैं।

देख सकते हैं ये ऑफिस है ये लिबर्टी ऑफिस है।

नीचे देखिए बालाजी गिफ्ट अस_वेल_अस स्टेशनरी है।

श्री चार्ज रखे हुए है गमले रखे हुए है स्वाइपर पर रखा हुआ है।

ये माइक्रोबे के डिफरेंट डिफरेंट बॉटल्स हैं जैसे हम देख सकते हैं कि माइक्रोबे प्लांट ग्रोथ बूस्टर है माइक्रोबे नाइट्रोजन है माइक्रोबे फास्फेट है।

माइक्रोबिक पोट है माइक्रोबिक साइल्ड हेल्थ केयर है पावर है मतलब ये सारे सॉएल इंग्रेडिएंट्स के लिए बनाया गया है।

ब्लैक राइट साइड मे पूरे बक्स रखी गयी है और एक चेयर भी रखी गयी है ब्लैक कलर --

हम देख सकते हैं एक फीमेल आंटी खड़ी हैं पिंक कलर की साड़ी पहन के और बहोत सारे मेल्स लोग भी खड़े हैं वहां पर और कुछ लोग--

यह हम देख सकते हैं कि स्वाद फास्ट फूड करके इसका नाम है हम ऊपर देख सकते हैं कि--

हम बाहर दो कार खड़ी देख सकते हैं दो बाइक खड़ी हमें वो भी दिख रहा है।

सामने हम देख सकते हैं कि फाफड़ा जलेबी समोसे का पिक्चर बनाया है ओ भी हम देख सकते हैं सामने रेस्टोरेंट बना--